मुझे इस पिक्चर में तीन अलग अलग प्रकार के मुर्गे नजर आ रहे हैं जिनका पूछ बहोत लंबा है।

एक पिलर नजर आ रहा हैं और जो फ्लोर हैं वो व्हाइट टाइल्स लगाया है जिसमें और एक दरवाजा है ब्राऊन कलर का है जिसमें कुछ पेपर लगाए--

और पीछे मुझे जंगल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यह एक दुकान नजर आ रहे हैं जिसमें ऊपर तीन बड़े बड़े पेप्सी के बोतल नजर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड बहुत सारे पिज़्ज़ा रखे गए हैं।

और ऊपर चोकोपाइ के और भी बहुत सारे मांगोज उसके जूस के बोतल है।

अ लेफ्ट साइड में जैसे कि हरा ब्लू कलर येलो कलर का पर्पल कलर का वाइट कलर का ग्रीन कलर का डब्बा रखा हुआ है।

और ऊपर कार्टून में बहुत बड़ा बड़ा कुछ सामान रखा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में एक ए_टी_एम नजर आ रहा है जिसमें तीन ए_टी_एम के मशीन्स है।

और उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का एक ए_सी र ए_सी भी रखा है।

एक साइड में एक आदमी एक अंब्रेले के नीचे बैठा हुआ है।

मुझे यहां एक बड़ा सा शीशा दिखाई दे रहे है जिसकी अगल बगल पत्ते सजाए गए हैं।

मुझे यह एक वाइन शॉप दिखाई दे रहा है जो कि फिलहाल बंद है।

और एक महिला है जिनका चेहरा छुपा हुआ है कहीं जा रहे हैं और उनके पीछे एक होटल है इटाफर्ट बोलके।

ट्रैक पैंट पहना हुआ है ग्रे कलर का है और उसने और उसने अपने राइट हैण्ड में एक लाल धागा पहना हुआ है।

और एक काली टोपी पहना हुआ है और एक साथ में एक चश्मा और जो कि एक पत्थर में बैठा हुआ है और उसके पास बहुत बड़ी एक नदी है।

इसके साथ व्हाइट कलर का बहोत सारा डब्बा रखा है।

मुझे इस पिक्चर में लंबा सा एक रास्ता नजर आ रहा है जिसमें एक मारुति सुजुकी खड़ी है।

खिड़की में वाइट कलर कर्टेन लगा हुआ है कुछ स्विच बॉक्सेस है और पिंक कलर का कर्टेन भी लगा हुआ है।

मुझे इस पिक्चर में एक लंबा सा एक बिल्डिंग नजर आ रहे हैं इसके ठीक नीचे बहुत सारे गाड़ी रखे हुए हैं लगभग हर गाड़ी के कलर सफेद ही है।

यहां गार्डन है जिसमें बहुत सारे पौधे और फूल लगाए गए हैं और फेंसिंग भी है।

मुझे यहां एक पार्क नजर आ रहे हैं जिसमें एक बैठने के लिए जगह है।

ग्रीन कलर का डस्टबिन भी है और उसके पीछे पौधे लगाए गए हैं।

और एक रास्ता भी है उसमें एक पोस भी लगाई है लाइट पोस ।